आई थिंक ये आर्टिफिशियल फ्लावर का शॉप है जहां पे बहुत सारे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रखे गए हैं।

के नीचे भी छोटे-छोटे सनफ्लावर है पूरा ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं चारों ओर फैली है इसने --

और ये जो पाथ है ये टाइल्स अः मार्बल्स लगे हुए हैं--

हाई कोर्ट जो है उच्च पटना उच्च न्यायालय इसको हिंदी में भी लिखा गया है।